गार्डन दिख रहा है और बच्चे खेल रहे हैं और कुछ औरतें भी वहां पर खड़े हैं।

पानी की बोटले भी वहा नज़र आ रही है।

बड़ा काम्प्लेक्स नज़र आ रहा है वहा पर बहुत सारे बाइक खड़े दिख-दिख रहे है।

और बहुत सारे आदमी वहा पर नज़र आरहे है।

सोये हुए है और एक आदमी खड़ा है।

सामने मैदान है वहा पर कुछ लड़के--

पर वहा पर झाड भी है।

उस घर का काम चल रहा है खिड़की दो खिड़की और एक दरवाज़ा--

एक लेडीज माइक में एंकरिंग कर रही है।

और बहोत से लड़के वहा पर खड़े हुए है।

सब तरफ चश्मे ही चश्मे की ही शॉप है।

सब तरफ के फूल नजर आ रहे हैं सब तरफ फूलों का बगीचा है और एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ है।

उसने वाइट कलर का शर्ट और पेंट पहना हुआ है।

गाड़िया लगी हुई है साइड से--

एक आदमी सामने खड़ा हुआ है।

बहत सारे पोस्टरस छपे हुए है कुछ फोर्ड के है और कुछ --

सिमट का घर नजर आ रहा है वहा पर पोस्टर लगा हुआ है।

रेड कलर का पोस्टर लगा हुआ है और पीछे जाड है।

एक हॉल दिखाई दे रहा है वहा पर ऐ_सी लगा हुआ है।

वहाँ पर एक ट्रैभेल भी लगी हुई है और सब तरफ गार्डन दिखाई दे रहा है।

खेत खेत नज़र आ रहा है वहा पर बोहोत सारे जाड लगे हुए है।

फैमली रेस्टोरेंट रूम नजर आ रहा है ।

वहा पर साइड से सोफा लगा हुआ है।

सामने दो लड़के बेठे हुए है।

डेकोरेशन किया हुआ है सामने एक टेबल नजर आ रहा है।

और शॉप को शॉप के कलर यलो कलर हैं और साइड से सब झाड़ लगे हुए हैं।

होटल बार नज़र आरहा है वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एक इंस्टीट्यूट स्कूल दिखाई दे रही है वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बाहर खड़ी हुई हैं।

वहाँ पर बहुत सारे बैलून्स रखे हुए हैं।

वहाँ पर एक झाड़ू भी रखा हुआ है।

एक रूम दिखाई दे रहा है वहां पर पानी का जार रखा हुआ है और एक दरवाज़ा बंद आ रहा है।

रास्ता दिखाई दे रहा है सामने काम्प्लेक्स पर बाटा नाम लिखा हुआ है।

गाले पर पोस्टर लगा हुआ है और ग्रीन कलर का कपड़ा वहाँ पर--

और वहाँ पर आदमी भी खड़े हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

उसमें काँच में बहुत सारे बेकरी के बेकरी के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।

फूल के पौधे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं।

और सब तरफ से झाड़ है।

और कुछ लेडीज अन्दर दिखाई दे रही हैं।

कुछ काइट्स के खिलौने भी नजर आ रहे हैं।

बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन दिख रहा है वहां पर सब चेयर पे बैठकर टेबल चेयर पर बैठकर कुछ--

सामने की ओर पानी का शोवर लगे हुए है।

कपड़ों की दुकान दिख रही है दुकान में स्वेटर लगे हुए हैं और अन्दर अलग अलग तरह के कपड़े नज़र आ रहे हैं।

पानी की टंकी नजर आ रही है और पॉट दिख रहा है पानी का पॉट दिख रहा है।

नर्सरी दिख रही है अगल अलग तरह के पौधे वहां पर नज़र आ रहे हैं और सब तरफ मिट्टी है।

कंप्यूटर पे बैठे हुए है और एक लेडिस चेयर पर बैठी हुई है।

आसमान दिख रहा है आसमान में बादल आए हुए हैं।

और झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं पहाड़ दिख रहा है और सब तरफ छोटे छोटे बड़े झाड़ दिखाई दे रहे हैं।